इसमें स्लाइड लगी हुई है। दो अलग-अलग प्रकार की स्लाइडे लग रही हैं सब -- कुछ लोग स्लाइड से होकर नीचे आ रहे हैं। पेड़-पौधे लगे हुए --

हैं काफी सारी ईंटे रखी हुई है बिल्डिंग्स भी बनी हुई है कुर्सी रखी हुई है कुछ व्यक्ति घूम रहे हैं काफी मकान बन चुके --